में देख सकते हैं की ये नाईट का समय है।

जो काफी लाइट्स ही लाइट्स दिख रहे है। चारो और काफी लाइट्स ही लाइट्स दिख रहे है। जो लिखा हुआ है --

बिना दवाई के भी एक व्यक्ति ठीक हो गए थे वही राजा ने इसे जला दिया गया वही राजा ने इसे जला दिया ।

ई अच्छी काफी बड़े जंगल्स नजर में आज काफी पेड़-पौधे आ रहे नजर में देखिए --

इतनी बड़ी गेंडा नजर में आ रहा है। बहुत ही --

डेकोरेटिंग अच्छी तरीके से यहां किया गया है काफी फूल भी लगाए गए जो बहुत ही सुन्दर देखने में लग रहा है।